फ्लोर पर पत्ते पड़े देखे जा सकते हैं सीढ़ियां देखी जा सकती हैं।

नीला रंग का सीट दिख रहा है बहोत सारा आदमी दिख रहा है।

इस तस्वीर में शादी देखी जा सकती है दूल्हा दुल्हन देखे जा सकते हैं पंडित जी देखे जा सकते हैं।

यह बिल्डिंग खंडहर हो चुका है बहुत सारा पेड़ पौधा दिख रहा है।

खिड़कियां हरे रंग की है बिल्डिंग सफेद रंग की है।

मरा हुआ मछली दिख रहा है।

घर के ऊपर छड़ और इट से दीवार बनाई जा रही है।

इस तस्वीर में सब्जी की दुकान देखी जा सकती है।

बहोत सारे झूले देखे जा सकते हैं।

पीला रंग का सीट देख सकते हैं नीला रंग का लोहा दिख सकता है।

बाजार देखा जा सकता है।

बहोत सारी दुकानें देखी जा सकती है।

छत पर एक लाइट लगा हुआ है।

बहोत सारी औरतें खाना खिला रही हैं।

सभी लोगों ने की ड्रेस पहने हुए हैं छत पर पंखे लगे हुए हैं छत पर कपड़ा लगा हुआ है।

आसमान देखा जा सकता है।

लकड़ी से बना हुआ घर दिख रहा है।

इस तस्वीर में आसमान साफ दिखाई देता है कुछ बादल देखे जा सकते हैं।

इस तस्वीर में पर्पल कलर की एक दुकान दिखाई देती है।